यँहा हम देख रहे है सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है और नीचे उसके कुछ लिख हुआ है और उसके जस्ट नीचे दो--

ये स्कीन कलर की जिसपे टाइम बता रहा है।